इस पर भारत सेफ्टी ग्लास पी वी टी एल टी डी लिखा हुआ है।

एवं यहां पर घर के अंदर में बहुत सारे दरवाजे लगे हुए हैं।

जहां पर एक गाड़ी का कलर व्हाइट एवं एक गाड़ी का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक खिड़की दिखाई दे रहा है जिसको लोहे की मदद से बनाया गया है।